आगे जो है पेड़ पौधे हरे भरे फूल दिखाई दे रहे है लाल गुलाबी ब्लू टाइप का।

काटून टाइप के नोजर आ रहा है बैलून कुछ उगे हुए दिखाई दे रहे है इसके ओगल - बगल कुछ ओतना नहीं दिखाई दे --

ये एक मोटरसाइकिल नजर आ रहा है।

एक युवक नीचे झुके हुए है नजर आ रहा है लगता है कि हवा दे रहा है गाड़ी में।

इस तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है।

इस डस्टबिन में मुझे नजर आ रहा है।

नहीं दिखाई दे रहा है साफ नहीं दिखाई--

इसमें तस्वीर में मुझे दिखाई दे रहा है।

ए एह पीला टाइप का टी-शर्ट पर लानी लाइन लगल लड़का एक होरा टाइप का टी-शर्ट नजर आ रहा है जो लाइन टाइप का लोअर नजर आ रहा हे।

और आकाश में और बादल नजर आ रहा है।

वो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं और ये और आगे कुछ साफ सुथरा दिखाई--

पीछे अ टाइप का --

अंदर में बहोत सामग्री रखे हुवे हैं जैसे--

इस तस्वीर में इस तस्वीर में मुझे नजर आ रहा है एक का।